यहाँ एक आदमी अपने हाथ से एक डिवाइस पकड़ कर उस एरिया की मैपिंग कर रहा है।

यहाँ कुछ मजदूर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि फिलहाल कॉलम को जमीन में फिट करते नजर दिखाई दे रहे हैं उन्होंने अपने दोनों हाथों से इन तारों को पकड़ रखा है।

यह एक मेडिकल की शॉप है जिसमें एक भइया बैठे हुए हैं जो की सेल्फी खींच रहे हैं दुकान के अंदर अलग-अलग प्रकार की दवाइयाँ रखी हुई हैं तथा एक पंखा लग रहा है और एक सी.सी.टी.वी.बी. भी है।

ये सनक सैनिक साइकिल मार्ट के सामने का दृश्य है उसके सामने एक व्यक्ति ने दो दो नई नई रिक्शाएं --

ये एक स्कूल का दृश्य है जहां पर असेंबली हो रही है यह राष्ट्र गान चल रहा है सभी बच्चे सावधान वगेरा के स्थिति में खड़े हुए हैं यहां भारतीय झंडा भी लहरा रहा है।

यहाँ एक भारतीय पॉलीग्राफ ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ एक बहुत बड़ा भवन है उसके सामने अलग-अलग प्रकार के मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं।

यहां एक किराने की दुकान दिखाई दे रही हैं सामने कुछ क्रिया रखी दिखाई दे रही है।